बेंच लगाई गई है जो कि --

मंदिर है मंदिर बहुत पुराना है ।

दुकान के बाहर लाइट जलती हुई नजर आ रही है ।